बहुत सारे झाड़ भी हैं और नीचे बहुत सारे गाड़ियाँ लगी हुई हैं और सब--

अभी-अभी बना है और उसका नाम है आ --

और एक अ चेयर रखी हुई है और सामने एक अ ब्लू कलर का बोर्ड लगा हुआ है उसके ऊपर कुछ--